मुझे यहाँ पर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है और पीछे जंगल दिखाई दे रहा है।

लाल-लाल हरा-हरा एक मकान एक टंकी दिखाई दे रही है सफेद कलर की पेड़ दिखाई दे रही है बहुत सारे खुला आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे --